और सड़कि का सामणि हमतें कुछ गाड़ी दिखेण लग्यीं खड़ी और हमतें बगीचा टाइप क दिखेण लग्यां ज्यों पर की हरयां भरयां डाला भी होयां।

ईं तस्वीर मा जी हम देख सगदौं कि यखम हमतें एक गुफ़ा च दिखेण लगीं गुफ़ा क भित्तर हमतें सीढ़ीन दिख्येण लगीं जान्दि।

ईं तस्वीर म जी हम देख सगदौं कि यखम हमतैं एक बैंक दिखेण लग्युं और बैंक म जी नीला रंगा कु बोर्ड बि लग्युं।

वै पर लिख्युं एच.डी.एफ.सी बैंक मसूरी शाखा और वैका भैर बिटि हमतें भोत सारा कूलर भी दिखेण लग्यां और सीढ़ी भी दिख्येण ल --

तस्वीर मा जी हम देख सगदौं कि यखम हमतें एक पुल दिखेण लग्युं और पुल का अगल-बग़ल हमतें लाल रंगा की रीलिंग दिखेण लगीं।